चाहो कोन खिड़की लगी है। सामने दीवार पर चित्र उतरा है। बाहर पेड़ है।

बड़ी लम्बी-सी मस्जिद है मस्जिद के हर फ्लोर पर लोग हैं लकड़ी के बास लगे हुए है।

पत्थर पर ऊपर सेन्द्री रंग की डिज़ाइन बनी --

सूरज है पीला आसमान है मैदान है।